और पतली पट्टियां ब्लू और वाइट कलर की हैं।

सामने एक सोफा है। बगल में एक मेज है।

और बगल में कूड़ा उठाने वाली मशीन है।

एक डस्टबिन है ग्रीन कलर की।

बगल में एक ब्रिज बना हुआ है।

जिस की जमीनों पर कारपेट बिछा है रेड और ब्लू कलर का।

सामने बड़ी सी एक दुकान है जिसके ऊपर बोर्ड लगा है। अजंता डेरी लिखा हुआ है।

सामने लंबी सी मेज लगी है जीस पर सफेद कपड़ा है।

ये एक बड़ी सी दुकान है साइकल की।

जिसकी दीवारें सफेद कलर की हैं।

जिनके ऊपर न्यूजपेपर लगाए गए हैं।

एक आदमी डमरू और त्रिशूल लिए है।

ऊपर वाॅल ब्लैक कलर का बड़ा बोर्ड लगा है जिस पर सचिवालया लिखा हुआ--

बगल में सीढ़ियां बनी हुई हैं जिन पर छोटे छोटे व्हाइट कलर के गमले रखे हैं लाइन से।

अंदर वाल बहुत सारे स्टूल रखे हुए हैं छोटे छोटे।

बगल में अलमारियां रखी हैं और डब्बे रखे हैं बहोत सारे।

यह एक बड़ा सा रूम है जिसमें लाइन से मेजे रखी हैं सफेद कलर --

ऊपर वॉल शीशे के बने हुए हैं।

साइड की दीवारें व्हाइट कलर की है और नीचे क्रिम कलर की।

उसके ऊपर बहोत सारे पत्ते पड़े हुए हैं।

जिसमें लंबी सी नदी बनी हुई है।

उसके अगल बगल में बड़े बड़े ग्रीन कलर के पेड़ लगे हुए हैं।

जमीनो पर ग्रीन कलर के घास उगे हुए हैं।

बहुत सारे पोस्टर लगे हैं लाइन से।

दीवारो पे बड़े बड़े पोस्टर लगे हुए हैं।

लंबा सा शीशा लगा हुआ है।

सामने बड़ी से बिल्डिंग है जिसकी दीवारे ग्रीन कलर की हैं।

सामने एक भवन है जो कि सफेद है।